एक साइज यहां पर एक पीछे गेट खुला हुआ है।

रखी हुई है पानी पीने के लिए होती है और सामने एक छपरा है उसके सामने एक बड़ा सा छप्पर है जो --

यहां पर कोई बिल्डिंग बन रही है जहां पर कुछ मजदूर--

यहां पर गमले हैं गमलों में पौधे लगे हुए हैं साइड में खजूर के पौधे लगे हैं।

दाईं ओर एक कांच का गेट है उसमें से एक खुला गेट भी है उस--

बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है सामने लाल रंग का कोई हाउस दिखाई दे रहा है उसके बाजु में बहुत बड़ा सा --

यहां पर बाइक और टेंपो दिखाई दे रहा है सामने बहुत बड़ा पौधा लगा हुआ है पेड़ --